पे गार्डन है हरी घास से पेड़ लगी बिहारी राखी पट्टी है एक खंभा करो जो सफेद रंग के लाइट लगाई गई है चारों तरफ पेड़ पौधे हरे पत्ते सफेद धोनी लक्ष्मण पर्दे खड़े सफेद रंग के--

ओपन द लॉस्ट माय नेम एक क्रीम दीवार पर कुछ लोग टहल रहे हैं नीचे से सामने साइड पर दीवार खड़ा हुआ जो सफेद रंग की हैपुल बनी हुई है बगल में एक छोटा सा झोपड़ी बना हुआ जिस पर टीने लगे हुए हैं।

और टीम डंडे गड़े हुए है जो सफेद रंग की डंडा है पेड़ पौधे हरी पट्टी है ऊपर से लाइट --

जो फूब्बारे उड़ रहे हे और अगल बगल पेड़ पौधे हरी पत्ती पीले रंग की हे सफेद नीला समान हे।

दुकान हे जो बोहित सारे पेकेट के सामान रेखा गयेहे लाल रंग के हारे रंग के ओ काले रंग के पेकेट के सामान राखे गये हे पैंपर्स राखी गयी हे

पर ऊपर की साइड में छत भी चाहिए जो सफेद रंग के रेले लगाएंगे।

पाहाऱा हे जो नीले रंग के पत्थर हे अगल बगल पेड़ पौधे हरी पत्तिया नीचे साईड पे पानी भारा हे जो हारे रंग की काँहासे।

खंबे गाडे हुई हे पेड़ पौधे हरी पत्ती सफेद और नीले आसमान हे पेड़ लागि हुई जो हारे रंग की हे दीवाल हे जो --

एक गेट बना हुआ जो सफेद रंग के दीवारे पोस्टर लगी ऊपर भी पोस्टर लगाए गए जो नीले रंग के का जो सफेद रंग की है।

काफी चौड़ी नदी है चारों तरफ पेड़-पौधे हरी पट्टी है बगल में पैदा हरी पट्टी एवं नई घास सफेद नीला आसमान है।

जो हारी फसाल हे कुछ पीले फसाल हे ए आदमी-- या खेत पे खड़ा हुआ हे।

नदी पे एक नौ खाडी जो लाकडी के बने हुये हे नदी के बाजू मे बड़े बड़े पत्थर रेखा गये हे सफेद नीला आसमान हे।

बना हुआ हे जो पैकेट टांगे हुए लाल रंग के और हारे रंगके पेकेट टंगी हुई हे दीवाल का रंग ये पिंक कलार का उपार छतरी हे जो सफेद रंगके पर्दे खरे हे जो लाल ओ काले रंग के हे।

एक हथी खड़ा हुआ है जो अतरंगी का है जो हो ऊपर के साइड पर एक आदमी खड़ा जो रहा है नीचे पोस्टर लगी हुई है सफेदनीले रंग की।